चीज़ भी रखा हुआ है|

यहाँ पे हम एक पा बस देख रहे है इस बस के अंदर बहुत यात्री है एवं इस बस के बाहर भी हम बहोत सारे व्यक्ति को देख सकते है इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ दुकान पाड भी देख सकते है।